यहां मुझे एक स्टोर दिखाई दे रहा है। बड़ी सी दुकान जहां पे कपड़े दिख रहे हैं।

एथनिक वेयर है लेडीज के शलवार सूट हैं फ्रॉक्स हैं पजामे हैं और उसमें लाइटिंग लगी हुई है फोटोग्राफ़्स लगे हुए हैं।

यह मुझे रेलवे की पटरी दिखाई दे रही है जो रेल की पटरी होती है।

सिस्टम रखा हुआ है कुर्सी रखी हुई है।

यह एक मैदान जैसी जगह है यहां पे चार पांच अह छोटे छोटे घर दिख रहे हैं मुझे।

ऑरेंज सफेद तीन चार आदमी बैठे हैं बड़ा सा ऑफिस है जिसमें कुर्सी है टेबल है सीनरी लगी है।

मुझे एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसमें छोटी छोटी हरी घास है।

एक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा है पीले कलर के कपड़े पहन के जो नीचे टेबल पे कुछ सामान रखा है नी लाल और पीले कलर का।

बाईके हैं बस है आदमी औरत दिख रहे हैं।

यह मुझे बड़ी सी जगह दिख रही है जिम है जिसमें बहोत सारी काली कलर की मशीने हैं।

ये मुझे खाने की जगह दिख रही है यहां पे बेंच और टैबल लगा हुआ है।

यहां मुझे एक जगह दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे लोग दिख रहे हैं मिट्टी का--

ब्लूबेरी लिखा हुआ है ए_टी_एम है आई_सी_आई_सी_आई बैंक है फार्मेसी है अपोलो और उसके नीचे बहोत सारे आदमी कुर्सी पे बैठे हैं।

यहां मुझे बड़ी सी जगह दिख रही है जिसमें बहोत सारी कुर्सी हैं उसके ऊपर सफेद कलर के कवर हैं।

सफेद कलर के सोफे दिख रहे है एक लड़का बैठा हुआ है।

यहां पे साइड मे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है नेक्सस सर्विस यहां नीचे गाड़िये खड़ी हुई है।

यहां एक ग्राउंड है जिसमें छोटे छोटे घास हैं बड़े बड़े पेड़ हैं।